और दीवार हरे कलर की दिखाई दे रही है और इसमें डिस्को लाइट लगी है जो की रंग बिरंगी कलर की दिखाई दे रही--

देखने में लेकिन यह छत का ही बना हुआ है और यहाँ पे लाईटे लगी हुई है और टाइलसे लगी हुई है साइड में जाने के लिए सीढ़ी भी दी गई है।

सामने एक मंदिर दिखाई दे रहा है जिसपे श्री पवन पुत्र ऑक्सीजन पार्क लिखा हुआ हैं और अंदर के साथ साथ पाइप बना हुआ हैं और यही पे--

सामने एक गेट लगा हुआ हैं जिसके ऊपर जिला ग्रंथ वाले का बोर्ड लगा हुआ हैं हरे कलर का सामने ही गेट जारी बारह दिखाई दे रहा हैं बेड के अंदर एक स्कूटी दिखाई दे रही हैं और खुला मैदान दिखाई दे रहा है।

और उसके सामने हरे कलर की कुछ लाइन भी दिखाई दे रही हैं सामने फर्श भी दिखाई दे रहा हैं।

यहाँ सामने एक दुकान दिखाई दे रही है जहाँ पे बहुत सारी कीमें रखी हुई हैं सामने एक बॉडीबिल्डर की लगी हुई है।

बाहर के द्वार पर दो गेट लगे हुए है उसके अंदर मंदिर है जो की रेड कलर का दिखाई दे रहा है गेट में काले और पीले कलर का दिखाई दे रहा है और आसपास में खाली मैदान भी दिखाई दे रहा है।